ये मेरे सामने एक किरयाना स्टो--

दिखाई दे रहा है टेंपू का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

ये मेरे सामने एक डी_जे लगा दिखाई दे रहा है।

इसकी दीवार व्हाइट कलर की बनी हुई दिखाई--

मंदिर में बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई दीखाई दे रही है मंदिर के ऊपर छोटी बड़ी भगवान जी की मूर्ति भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर इसका कलर ग्रीन कलर का और ब्ल्यू कलर का और पिंक कलर का है दिखाई --

गेट है शीशे का दिखाई दे रहा है दुकान के बाहर दो आदमी भी खड़े हुए दिखाई--

बहुत अच्छा बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

ये मेरे गांव में कोई गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं गार्डन के बीचों बीच--

में कुछ लोग लेडीज और जहां बच्चे दिखाई दे रहे है ये गांव की सीनरी दर्शाई गई हुई दिखाई दे रही--